ई केनरा बैंक छीये ए.टी.एम ऐमे बहुत सुविधा छै सी.सी.टी.वी कैमरे लागल छै ए.सी के साथ छै। कुछ एलंस अलार्म --

अंदर में एकटा स्टूल छै। मतलब अमिताभ बच्चन के एठा पोस्टर- टोस्टर लागल छै बहुत बढ़िया --

ईहो ऊहे पिच्छ लुके वाला छै। ऐमे पूरा खंभा आर लागल छै। पूरा घर तर पेंट टेंट और सजावट छै। साइड में बालू गिट्टी आर गिरल छै और--

ए सहरसा जक्शन छे।

ग्रिल ट्रिल छै पुरा पेड़-पौधा आर से सजावल तजाएल छै। गेट तेट ठीक पौधा आर लागल छै।

चिन्हित के लिए पोस्टर टोस्टर लागल छे जी लोग पहचाने ई ए.टी.एम. साइड से दूटा आदमी खड़ा छे।

पैसा निकल रहल छे ए.टी.एम. से पैसा निकल रहल छे और इमे दुईठा ए.टी.एम लागल छे।

इ बजाज के शोरूम छीये एमें बहुत सारा मतलब उदघाटन भेले ये नए नई में बहुत सजावट छै अंदर में बहुत टेम्पू छै।